ये देखिए ये जो मूर्तिया है ये देखो ये मूर्ति यहाँ पे ख खड़ी हुई है जो की देखो कुछ बैठी है कुछ खड़ी है कुछ आशीर्वाद दे रही है ये मट्टी की बनी हुई है स्टेचू जैसे है खड़े है।

यहाँ पे आप देख सकते है किसी चीज का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं।

ये देखिये ये भगवन श्री कृष्ण और उनके प्रिये प्रेमिका राधा जी की फोटो है ये आप देख सकते है की ये आईये राधा कृष्ण की फोटो है।